ये तो मै बता सकता हु ये खाने मे बोहोत अच्छी टेस्टी है मै जनता नहीं हु यहां पे बोहोत सारी चीजे दिखाई दे रही है मै जनता नहीं हु के क्या कहलाता है बोहोत मजा भी आया है अच्छा भी लग रहा है।

यहाँ पे अच्छी डिजाइन भी दिखाई यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा जेसे शादी है अच्छे ब -- अच्छी अच्छा दो आदमी बना हुआ है अच्छा भी लग रहा यहाँ पर हरी कलर की चटाई भी बिछी हुई हैं।